और उसमें कुछ आलू बड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ आलू छोटे दिखाई दे रहे --

यहाँ बाढ़ के पानी में एक बस और एक फोर व्हीलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वर्कर एक येल्लो कलर का टोपी और पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और वह पाइप को जॉइंट कर रहा है जो कि पाइप ब्लैक कलर का है।